ये एक लड़का बैठा हुआ है कुर्सी पर नई वाली तौलिया लगा हुआ है उसपे --

और यहाँ पर लोहे की बोहोत सारी पाईप भी लगे हैं नीचे जमीन में घास है हरी-हरी सी है कुछ हल्की पीली-पीली सी हैं और--

जो कि नीले रंग में पेंट है और बोहोत सारा पेड़ का पत्त --

रंग का हार्ड बोर्ड लगा हुआ है ये लड़का बैठा हुआ है और ये पैन पेपर ले के--

सामने की तरफ नीला पोस्टर लगा हुआ है सफेद रंग में केनेरा बैंक लिखा हुआ है।

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि यहाँ पर सामने की तरफ एक तालाब--

यहाँ पर फिफ्टीन रूपीज फिफ्टीन रूपीज लिखा है यहाँ पर--

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि यहाँ पर सामने की तरफ सीढ़ी बनी हुई है और शटर दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग से पेंट है।